इस तस्वीर में हमें यहाँ पे लाईब्रेरी दिखाई दे रही है ये स्टेशनरी है पूरी बुक की और यहाँ पे बुक्स रखी हैं और एक लड़का है जिसने वाइट कलर का शर्ट पहना है।

ने वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है उसके बाल ब्लैक कलर के है और उसके आगे एक लड़की खड़ी हुई है जिसने वाइट कलर का दुप्पटा ओढ़े हुए --

इस तस्वीर में हमें अअ दो लोग दिखाई दे रहे हैं | एक लड़का है जिसने पिंक कलर का टॉप पहने हुए है।

इस तस्वीर में हमें चर्च दिखाई दे रही है चर्च के अंदर कुछ लोग हैं जिनहे व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें यहां पे पुल दिखाई दे रहा है । पुल के नीचे पानी भरा हुआ है इसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक लड़का है जिसने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहने हुए है। इस--